लगा हुआ है आस-पास बालू दिखाई दे रही है बालू के ऊपर --

छत दिखाई दे रही है इसमें कई सारे फ्लोर्स बने हुए है इस पर --

रेलिंग लगी हुई है। आस पास हरे भरे पेड़ नजर आ रहे --

पर्दे दिखाई दे रहे हैं जोकि गुलाबी रंग के वहां पे खिड़की लगी है जोकि भूरे रंग की है।

नजर आ रहा है जहां पर --

सामने की दीवार है जो पीले रंग से रंगी हुई है। उसपे एक सैफ की आकृति --

यह एक पार्क का दृश्य है जिस --

बोर्ड लगे हुए हैं जिस पर कुछ लिखा --

मशीन के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है जो कि नीले रंग के कुर्ते पजामे में है। नीचे का फर्श नजर आ रहा है जहां पर ये मशीन रखी हुई है।

यह एक खेत का दृश्य जिसमें हरी-हरी घास दिखाई दे रही हैं। झाड़ियाँ नजर आने प हरी-हरी पत्तियाँ --

पानी पर पतरंग बना रही है और इस पानी में वेव्स आ रही।

फर्श दिखाई दे रहा है। फर्श पर एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसके सर पर टोकरा रखा हुआ है जिसमें हरी-हरी पत्तियां नजर आ रही हैं। और भी सामान रखा हुआ है आसपास।

जहां पर एक मकान का निर्माण का कार्य चल रहा है। नीचे फर्श दिखाई दे रहा है जहां पर बालू बदरपुर --

चारों तरफ यहाँ पर बल्लियाँ लगी हुई हैं। रोड़े कंकड़ आस पास फैले --